यखम में दुकान ही सी दिख्याणी जख बहुत ही सुन्दर ढंग सियों का अलग-गलग खांचा छीन बणाया।

में दिखेणी एक कार पार्किंग मा जू मॉल का निशान वोही पार्किंग छ यू यख बिटिन बहुत सारी गाड़ी छन दिखेणी।

पर दिखेणी फिसलडी छ दिखेणी लाल रंग की फिसलडी छ गोल मटोल फिसलडी छ ये पर एक नौनी छ जै पर झींगी फ्रॉक छ पहनि अ नीले रंग की स्वेटर छ पहनि।

बाग छा जु पिछाड़ी बटिन ज्यू मै पत्ता पुत्ता छन दिखेणा एक बॉस कु डंडा भी छै दिखेणु और पिछाड़ी मैदान छ दिखे।